आस-पास काफी सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे है।

यहाँ पर स्पा यहाँ पर लाइट जल रही है।

यहाँ पर आस-पास काफी सारी घण्टियाँ लगी हुई हैं।

इसके अंदर काफी सारे पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर सफेद चेयर और अ येलो से अ कुर्सियों को ढका गया और यहाँ --

आसपास काफी सारे मकान दिखाई दे --